ये यहां पे आप देख सकते हो ये औरतें देख रही है और इन्होंने हाथ में एक कागज सा ले रखा है और यहां पे आप देख सकते हो।

और यहां पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा प्रबंध दिख रहा है।

बिजली के खंभे भी दिख रहे हैं और यहां पे बहुत सारे पेड़ व बाइक गाड़ी भी दिख रही है यहां पे आप देख सकते हो पीछे घर भी बना हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हो ये गमला दिख रहा है और यहां पे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं और

और यहां पे बैठने की भी सीट है और यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पे गाय के आगे चारा भी डाल रखा है यहां पे देख सकते हो।

उम्म उम्म पर्दा नीले रंग के भी हैं हरे रंग के भी हैं काले रंग के भी हैं।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

और यहां पेड़ ही पेड़ दिख रहे है यहां पे आप देख स--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

एक सियासन दिख रहा है और यहा पे

ये यहां पे देख सकते हो यहां पे मेडिसर ये मल्टीस्पेस्लिस्ट हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

और यहां पे देख सकते हो इस आदमी ने नीले रंग का कोट पहेन रखा है।

और ये यहां पे मंदिर वगैरा सा दिख रहा है यहां पे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पे कुर्सियां भी रखी हुई हैं ये--

केबिन देख रहा है और यहां पे सटर भी दिख रहा है यहां पे आप देख सकते हो।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

पेड़ ही पेड़ यहां पे ये घास दिख रहा है।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

यहां पे आप देख सकते हो यह एक आदमी है।

ये यहां पे पैडी भी दिख र--